पाइप फिट करे यहाँ पर यहाँ पर बहुत काम चालू है।

अ कंप्यूटर रखा हैं साइड में चेयर हैं साइड में बहुत सारा सामान हैं फैन हैं।

यहाँ पे बहुत सारा समान रखा है यहाँ पर वायरिंग वगैरह।

एक गेट हैं उस साइड में और पाइप वगैरह लगे हैं वहाँ पे एक पेड़ हैं ।

यहाँ पर वाइन शॉप कि है यहाँ पे कलर कलर के जो है।

मस्त है वहाँ पे लाईटें वगैरह हैं।

और यहाँ पे लगी हुई हैं और।

यहाँ पे एक प्रिन्स ढाबा हैं मस्त दिख रहा हैं साइड मैं और।

यहाँ पे एक लगा हुआ हैं और साइड एक पेड़ हैं ।

और बल्ब वगैरह लगे हुए हैं झूमर लगा हुआ हैं चारो --

न एक आदमी खड़ा हैं उसके काटके दे रहा हैं ।

और साइड में मिरर है वगैरा बहुत बड़ा और--

ये एक कोचिंग क्लासेज है यहाँ पे बहुत सारी चेयर हैं बहुत सारे लड़के लड़कियां बैठी हुई हैं।

और फैन वगैरा है साइड में दो साइड से दरवाजे खिड़कियां वगैरा है --

बड़ी बड़ी टोपिया रखी हुई है साइड में दुकान है।

सामान रखा हुआ है यहां पे फ्रिज है छोटे-छोटे डब्बे है डब्बे में सामान वगैरा रखा हुआ है।

छोटे-छोटे बकेट वगैरा रखे हुए हैं --

वॉलपेपर वगैरह चिपकाया हुआ है आगे एक टेबल है वहां पे और।